ट्रैक्टर की कंपनी लगती है।

यह एक सादी लगती है इसमें कई सारे--

बहुत सारी लाइट लगी हुई है वाइट कलर की।

और यहां सामने ईंटे पड़ी हुई है।

और वो मंजिल का मंदिर बना है।

एक दुकान का नाम हरीरा--

यहां सफेद रंग की कहीं बहुत सारे सोफे रखें हुए हैं और सामने--

ये एक तीन सोफे रखे हुए हैं अलग अलग रंग के।

यहां पर एक सुन सान सड़क है।

यहां पर सभी प्रकार की गाड़ियां वाश कराई जाती है एक आदमी कार --

और एक पानी की बॉटल --

नई अलमारी है जिसमें समान रखा है।

इस दुकान में कई सारे पाइप रखे हुए है।

दो तरह के कपड़े चढ़ाए जाते हैं नीला और लाल यहां चमकनी भी लग रही हैं औरतें प्रार्थना कर रही हैं।

यह कोई मॉल लगता है।

यहां पर बेल्ट भी टंगी हुई है।

एक मेज है और एक--